रूम देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

पर्दा का कबर नीचे में बैग लगाकर बैग रखा है।

घर भी बहुत बड़ा है।

के लिए एक मंदिर में है छोटा करके--

और बहुत सारे पेड़ भी हैं बहुत क्लीन है जगह।

कार तो बहोत बड़ा है।

ऊपर में दो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक करके वो पोस्टर लगा--

अंदर में एक चेयर है।

सामने एक बहुत बड़ा घर है।

सामने बहुत सारे ऑटोवे है।

वहां पे खेत भी है दान का खेत--

यह एक बहोत बड़ा स्टेशन है।

बहोत सारे लोग के यहां पे--

कुर्सी जे बाहर भी रखा है।

घर भी बहोत बड़ा है।

और बहोत सारा कारे हैं।

और रेड कलर के कार के आगे तो एक पोस्टर भीं लगा --

और कारों के नीचे एक कार्पेट लगा है।

वहां पे एक स्टेज भी है।

इस छत के ऊपर भीं क्या लगाया है।

वहां पे नीचे दो लोग कर है।

पोस्टर ऊपर में लाइट जल रहा है।

उस साइड बहुत बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

ऊपर तो वो कुछ लोगो ने वो भी किया है।

पूरा दोनों साइड में पकड़ के रखा है।

यहां में बहोत मस्त लग रहा है और वहां पे दो सर है।

वहां बहुत बड़ा घर है ये।

बहुत सुंदर लग रहा है।

और साइड में एक पेड़ है।

वो आर्मियो का शट भी है वो टांग के रखा है।

दुकान में बहुत सारे चीजें हैं।

घर तो बहुत बड़ा है।

देखने में तो बहोत सुंदर लग रहा है।

हां घर के अंदर ही बहुत सारे फेरे लगाया है।

कुछ लोग तो पैदल चल रहा है।

ऊधर पे हीरो करके लिखा है और हीरो बाइक का पेज भी है।

दुकान के अंदर एक स्कूटी है स्कूटी भी है और साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

पूरा रास्ता तो पूरा है पूरा क्लीन है।

फिर भी बहुत सारे है दिखने में भी बहुत मस्त लग रहा है।

देखने में बहोत मस्त लग रहा है।

यहां पे एक घर है।

वो गेट के पास एक पोस्टर लगा है।

देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां फे एक पोस्टर है।

अंदर में भी बहोत सारे हैं।

देखने में बहोत मस्त लग रहा है।

साइड में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है अभी तक कलर नहीं किया है।

देखने में भी बहुत सुंदर है।

और साइट में एक बहोत बड़ा घर --

बहुत सारे तारे हैं और बॉक्स भी बहुत सारे हैं।

पूरा पैकिंग करके रखा है।

पीछे तो पूरा ग्रीन कलर का लगाया है दुकान पे।

और साइड में चेयर है ऊपर में वो साइन बोर्ड लगा हैं।